ये ऑफिस या कार्यालय के अंदर का फोटू दिखाई दे रहा है जिसके अंदर बिल्डिंग के ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है कुछ सामने कुछ एक--

कुछ बोरे जाली वाली दिखाई दे रहे है कुछ सफेद दिखाई दे रहे हैं सामने काँच का एक गेट लगा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर कुछ पोस्टर लगा है ऊपर के साइड लाल कलर का बैनर लगा है जिसके अंदर कुछ लिखा है और ऊपर एक कपड़ा डला हुआ है जिससे बारिश से बचने और धूप से बचने के लिए डाला।

किसी स्टेज का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके अंदर नीचे स्टेज के नीचे काला कपड़ा बिछया सामने कुछ जैसा बनाया दिखाई दे रही है ऊपर सामने की साइड में कुछ चेयर के ऊपर बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे है पीछे टेबल लगी है जिसके ऊपर लाल कपड़ा लगा है कुछ लोग बैठे दिख रहे है।

यह किसी कार सर्विस सेंटर के बाहर का फोटो दिखाई रहा है जिसके अंदर एक बाहर एक कार खड़ी दिखाई दे रही है सामने के साइड में कुछ ड्रॉर बने है जो काले पत्रे के बने हुए हैं इसके के ऊपर कुछ डब्बे आयल के डब्बे रखे दिखाई दे रहे हैं पीछे के साइड चद्दर का शेड बना हुआ दिख रहा है और पीछे एक बैनर लगा है जिसके ऊपर इंग्लिश में कुछ लिखा दिख रहा है।

किसी कार सर्विसिंग सेण्टर का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके यहां बहुत कार खड़ी दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की जिसकी एक टायर नीचे गिरा पड़ा दिखाई दे रहा है पीछे की साइड टायर दिख रहे है सामने उसका बोनट खुला दिखाई दे रहा है।

ऊपर से कुछ वायर लटकता हुआ कुछ बल्ब टंगे हुए दिखाई दे रहे है आसपास कुछ खिड़किया बनी दिखाई दे रही है जो ऊपर वाले फ्लोर का कुछ चदर का शेड बना हुआ दिखाई दे रहा है झाड़ लगे और पार्किंग में कुछ गाड़िया खड़ी दिखाई दे रही है एक व्यक्ति के हाथ में पीले कलर की थैली --

ये किसी पूजा का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके अंदर पीछे छोटा सा कुंड बना है जिसके अंदर कुछ पानी भर दिख रहा है राइट साइड उसके कुछ रेलिंग दिखाई दे रही है आस-पास खुला ग्राउन्ड है पीछे के साइड मे कुछ घर बने दिख रहे है।